तो एक रोड हेगा जिसके सामने विनि रेस्टोरेंट हेगा यहाँ पर तो बहुत सारी खाने की चींज़े दिख रही हैं।